दो बोर्ड लगे हुए हैं साइड में एक बिजली का मीटर भी लगा हुआ --

बैनार छप रहे हैं और साइड में सफेद पेटी भी रखी हुई है।

जो फूलों से डेकोरेशन की हुई है।

कुछ लोग सोफे पर बैठे हुए हैं सोफे भी हैं।

और यहां बैलून भी दिखाई दे रही हैं।

यहां भी रखे हुए हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

रोड भी दिख रहा है साइड में कूलर भी दिखाई दे रहे हैं और--

टेबल भी रखी हुई है शटर भी है।

इसमें भगवान जी की तस्वीरे भी हैं। साइड में दो आदमी भी हैं।

बल्ब भी जल रही हैं और पानी की बोतल रखी हुई है।

पीले रंग का है और इसमें लोहे का एक गेट भी है दो पिलर भी है और हरे पेड़ पौधे भी हैं।

यह एक ट्रेन दिखाई दे रही--

कलर के डोर हैं और इसमें शीशे लगे हुए हैं।

बर्गर चाउमीन पिज्जा छपा हुआ है। मोमोज भी है और यहां चार पांच आदमी खड़े हुए हैं।

छः सात मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई हैं।

जिसमें बेड पर कुछ व्यक्ति लोट हुए हैं और--

यहां हरे रंग की लाइटें भी जल रही हैं बहुत स--

हमें इस क्षेत्र में हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जहां हरे पेड़ पौधे भी लग रहे है और--

और हरा कट्टा दो सौ निन्यानवें --

हमे इस चित्र में वूमेन जर्सी की दुकान दिखाई दे रही है।

यह एक घर दिखाई दे रहा है।

सामने एक काली गाड़ी में दो आदमी बैठे हुए हैं।

और के सफेद रंग से स्वागतम लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें साफ पानी करने का आर_ओ भी दिखाई दे रहा है और --

ए_सी भी दिखाई दे रही है इसमें सामने बोर्ड लगे हुए हैं।

बिजली का मीटर भी दिखाई दे रहा है।

डेकोरेशन हो रही है सफेद गमले भी रखे हुए हैं।